इस फोटो में स्कूल का दरवाजा दिखाई दे रहा है जिस पर साइन बोर्ड म पी पब्लिक स्कूल लगा हुआ है गेट पिले कलर का लगा हुआ है जिसका एक छोटा दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है।

लिन का कलर हल्के भूरे रंग का है बिजली का तार भी इसमें दिखाई दे रहा है कुरकुरे बिस्किट मेहंदी आदि के पैकेट रखे दिखाई दे रहे हैं नीचे डब्बे जमे हुए नजर --

इस फोटो में एक होल दिखाई दे रहा हैजिस में निसाने बाजी वाला गेम एमे खेला जाता है बन्दुक रखी हुई है।

इस फोटो में सड़क के किनारे एक के.के इंजनियरिंग एंड इलेट्रिकल की दुकान दिखाई दे रही है जीका दरवाजा बंद है कांच--

फोटो में काले कलर की एक सड़क नज़र आ रही है सड़क के किनारे सफ़ेद कलर की बोरिया भरी रखी दिखाई दे रही है जो की हरे घास के मैदान पर रखी है।

इस फोटो में एक स्कूल की इमारत दिखाई दे रही है जिसके सामने एक दो मोटरसाइकिल और एक वैन खड़ी नजर आ रही है इसको --

बिल्डिंग में हमें खिड़की और दरवाजे भी नजर आ रहे हैं पेड़ की छाया रोड पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक गाड़ी शोरूम का दिखाई दे रहा है जिसमें स्कूटीयां खड़ी हुई नजर आ रही है न्यू अराइवल का साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां एक खेत नज़र आ रहा है जिस में सूरजमुखी के फूल लगे हुए है कुछ फुल गमले में लगे है बाकि फुल जमीन पर लगे दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में एक गली का नजारा दिखाई दे रहा है जिसके साइडों पर गाड़ियां पार्क की रखी हुई है बिजली का खंभा है और कुछ लोग खड़े हुए मोटरसाइकिल पर जाता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है कुछ मकान नजर आ रहे है।